एक बड़ा सा हरा भरा गार्डन दिख रहा है।

स्टेशनरी के अंदर कुछ बल्ब्स लगे हुए हैं।

यहां पर बहुत सारी दुकानें लाइन में लगी हुई दिख रही हैं।

जहां पर नीचे बहोत सारी पीले रंग की स्कूल बसेज लगी हुई दिख रही है।

जहां पर बहोत सारे पत्थरों को--

इस चित्र में एक सलून नजर आ रहा है जहां पर दो व्यक्ति कुर्सी के ऊपर बैठे--

बाल कटवाते हुए दिख रहे हैं।

शीशे के सामने लाल और सफेद रंग के गुब्बारे दीवारों पर लगे दिख रहे हैं।

एक बड़ी सी बिल्डिंग नजर आ रही है।

दूसरी ओर एक छोटे से बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हुए नजर आ रहे हैं।

सामने एक गोल सा शीशे का टेबल और कुछ नीले रंग के सोफे बैठने के लिए रखे गए हैं।

एक छोटा सा गार्डन नजर आ रहा है गार्डन के पार दो बच्चे एक झूले में बैठे हुए दिख रहे हैं।

गेट से निकलती हुई नजर आ रही है।

इस चित्र में एक स्कूल की बिल्डिंग नजर आ रही है।

और नदी की दूसरी तरफ कुछ लोग--

पीले रंग का बड़ा सा गेट लगा हुआ हैं।

इस चित्र में एक गार्डन नजर आ रहा है।